इस फोटो में मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ चेस दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक आंगन दिखाई दे रहा है।